पाणी पीणी वाल और ये आदिम सीशा दरवाज लगो रोया कतू भलू बडो खुब दिख्योणा छा क तु भलो नजारा दिख्योणु यो।

इष्ट देवता मंदिर छन यो यख भोत बड़ो मंदिर छ यो घर भार फणा जु नजारा मनन इष्ट देवता मंदिर ये से बड़ो रॉन यो।

कतु बड़ीया नजारा छ देख सक छा य नजारा बडो मुश्किलांक मिल्दू देख्युणु आदम ग मन खुश हुए जाएं कति देख दी ।

कई साल बटिन यफन डुंग देख सक छा कति भोल बोडो नजारा।

पहाड़ों मा दनादन मकान बणनि हरया भरि पेड़ छन।

नई नई प्रकारा बल्ब जलनि और पाणी ले बिल्कुल सुन जैस समकोणु कति भलु नजारा दिखेणु देख सक --